यहां पर एक प्रिंटर दिखाई दे रहा है यहां पर प्रिंटिंग प्रेस का कार्य किया जाता है।

यहां पर लेबर द्वारा पेंटेन प्रेस का कार्य किया जाता है।

यह एक मैदान है जहां पर कछुआ अपनी जगह पर व्यवस्थित --

यह एक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर एक बोर्ड नजर आ रहा --

यहां पर रानी जी की बावड़ी का बोर्ड नजर आ रहा --

जहां लाल पीला बैंगनी कलर की माला नजर आ रही।

जहां मुसलमान पूजा करते हैं यहां की लाइटिंग भी व्यवस्थित --

यहां पर बिल्डिंग का कलर सफेद और हरा नजर आ रहा --

रेल्वे स्टेशन में कुछ लोग विचरण करते नज़र आ रहे।

शॉप नजर आ रही है जो कि रेस्टोरेंट नजर आ रही --

यहां पर पेन लटके हुए नजर आ रहे हैं।

स्कूल में पढ़ने के लिए कॉमर्स आर्ट्स पढ़ी जा सकती है।

जहां पर स्कूल के बच्चे खो खो खेलते हुए नजर आ रहें --